तब घर जाके उसको पूरा मनोकामना पूरा हो जाता है |

ये बहुत अच्छा लगता है देखने में कितना सारा फूल सजाया हुआ है। ये देखिए दोनों लड़का-लड़की के लिए कोच भी हैं।